इसके बीच में लकड़ी के मदद से कुर्सी एवं टेबुल बने हुए हैं।

इसके सीलिंग में प्लाई एवं लाइट से बने गए हैं।

यह एक शोरूम का दृश्य है यहां पर बहुत सारे ऑडी कार लगे हुए हैं।

इसके दीवाल का कलर व्हाइट एवं ऑरेंज कलर से वॉल पुट्टी किया गया है।

यहां पर बहुत सारे कूलर लगे हुए हैं।

इसके दीवाल का कलर व्हाइट एवं ब्लू कलर से स्मोसन किया गया है।

या एक पार्क का दृश्य है यहां पर बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं जो अनेक कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

यहां पर लोहे के एंगल के मदद से बहुत सारे मशीन बने हुए हैं।

यह एक मस्जिद का दृश्य है यहां पर एक जनीमाज लगाए हुए हैं जो ब्लू कलर के हैं।

इसके सीढ़ी बने हुए हैं सीढ़ी का कलर पीला एवम रेड से किया गया है।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

इसके बगल में एक कार गुजर रहा है जिसका कलर व्हाइट है।

उसके बगल में एक सोफा भी लगा हुआ है जिसका कलर ब्राउन है।

यह एक स्विगी होटल का दृश्य है तथा यहां पर बहुत सारे लकड़ी के मदद दे टेबुल बने हुए हैं।

इसके फर्श व्हाइट टाइल्स से लगे गए हैं।

यहां पर एक लाइट भी जल रहा है जो येलो कलर की है।

यह एक राशन दुकान का दृश्य है यहां पर चार व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक एवं व्हाइट कलर के ट्राउजर पहने हुए हैं।